तस्वीर किसी पर्यटन स्थल का है।

सामान है जो ग्रे रंग का है।

पीछे पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर किसी पब्लिक पार्क का है।

ये हाथों को फैला कर वो जो दिख रहा है।

यहां बड़े आकार की मिर्चियाँ भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी बस अड्डे का है।

यहां कई सारे लोग मेट्रो के आने का वेट कर रहे हैं।

सड़क पर कुछ लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे--

बिजली की कुछ तारें भी दिख रही हैं।

तथा वॉलीबॉल कोर्ट भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

शादी ब्याह का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है।

यहां कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

खुद की तस्वीर लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

तेज धूप से बचने के लिए ऊपर शेड का निर्माण किया गया है।

यहां कई सारे टेबल एवं कुर्सी लगी हुई है।

यहां कुछ साइकिले बाईं ओर पार्कड दिख रही है।

यहां सामने की ओर एक मेट्रो खड़ी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक शख्स अपनी तस्वीर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।

वॉल पर एक शीशा लगा हुआ है जिसमें दूसरे सक्स की छवि दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी नर्सरी का है।

एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदता हुआ नजर आ रहा है।

दुकान के बाहर कैरम के बोर्ड टंगे हुए दिख रहे है।

नीचे की ओर एक शख़्स कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इनमें से अधिक गमलों का कलर काल रंग है।

तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का है।

कई सारी अलग अलग तरह की चीजे जो लकड़ी के द्वारा निर्मित की गई हैं।

वह सजाकर रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक शख्स भी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही है।

कॉलेज की यूनिफॉर्म में है।

एक नीले रंग के बोर्ड पर रवि फोटोग्राफिक्स लिखा हुआ है और दूसरे पर केंद्रीका लिखा है।